यहाँ पर आप देख सकते है सामने की तरफ यहाँ पर पटरी पर से एक ट्रेन जाती हुई दिखाई दे रही है यह ट्रेन ब्राउन कलर की है।

यहाँ पर आप लोग देख सकते है यह एक स्कूल के अंदर की तस्वीर है जहाँ पर ये एक कॉरीडोर दिखाई दे रहा है इस कॉरीडोर मे काफी सारी चेयर्स रखी हुई है।

अलग अलग डिजाइन की बहुत सुंदर कोट रखे हुए है जो की रेड कलर के कार्पेट के ऊपर एक स्टैण्ड मे रखे हुए है यहाँ लाइटिंग की भी अच्छी व्यवस्था है।

यहाँ पर हमे कुछ आदमी भी दिखाई दे रहे है और इस के इस तरफ एक पार्क बना हुआ है जिस मे की काफी सारे पेड और फूल भी लगे हुए है जो --

यहाँ पर पटे के ऊपर तीन मूर्तिया रखी हुई हैं और चार पटे रखे हुये हैं यहाँ पर पूजन का सामान भी रखा हुआ हैं और पीछे दीवाल पर ऑरेंज और ग्रीन कलर का कुछ--

इसमे थ्री सिक्स्टी सैलून अ फैमिली सैलून लिखा हुआ हैं यहाँ पर एक सोफा भी रखा हुआ हैं और कुछ कबर्ड मे सामान भी रखा हुआ हैं।

यहाँ पर अंदर की तरफ दोनो तरफ काफी सारे बड़े-बड़े पेड़ छोटे-छोटे पेड़ और बहुत सुंदर-सुंदर फूल और लाइट भी लगी हुई है और सामने की तरफ बुद्धा जी की एक बड़ी मूर्ति भी है।

यहाँ पर आप लोग देख सकते है ये एक बिल्डिंग की साइड से फोटो ली गई है जहाँ पर हमे तीन बालकनी दिखाई दे रही है।

यहाँ पर आप लोग देख सकते है सामने की तरफ ये एक बहुत बड़ी चर्च बनी हुई है।